इस इमेज में हमें एक काफी बड़ा मॉल नजर आ रहा है जिस पर सामने गिलास पर ट्रेंड्स लिखा हुआ है।

एंड सामने कुछ लीडर्स भी नजर आ रही है। एंड कुछ विंडोस भी नजर आ रही है एंड --

एंड वाइट कलर कर रहे है। इन लड़कियों ने--